पार्किंग का चित्र है जिसमें बहुत सारे ऑटो पार्क हुए है।

ये एक मंच का चित्र है जिसको बहुत ही सुंदर सजाया गया है।

चारों तरफ हरे भरे पेड़ है कुछ गुलाब के फूल भी दिखाई दे रहे हैं और घर में जाने के रास्ते भी हैं।

यह एक खाली कमरे का चित्र है।

यह एक बहुत ही सुंदर चित्र है जिसमें एक--

इस दुकान का नाम विशाखा डेयरी पार्लर है।

के चारों ओर हरे हरे पेड़ है और घोड़े पर बैठे एक व्यक्ति की मूर्ति भी है।

मंच के ऊपर घड़ी लगी हुई है और मंच को दीवार मंच की दीवारों को गुब्बारों से सजाया हुआ है।

जो की एक शोरूम का है।

घर के सामने कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जिसमें दोनो ओर बिल्डिंग है एक होटल भी है ऊपर बिजली के तारे भी है और कुछ व्यक्ति संध्या के समय सैर कर रहे है।

जिसमें रोड के साइड में एक बहोत ही सुंदर लाइट लगी हुई है और बैठने के लिए बेंचेज लगे हुए हैं।

चारों तरफ हरियाली है और एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है ये एक पहाड़ी क्षेत्र प्रतीत होता है।